ये एक काली बारांडा जैसा दिख रहा है जहां सामने नीचे कुछ टाइल्स पड़ी है और थोड़ी मिट्टी भी बिखरी पड़ी हुई है।

दो बत लड़कियां छोटे छोटे एक और लड़की है लड़कियों ने साड़ी जैसी पेहनी हुई है।

एक सामने आग बुझाने वाला यंत्र पड़ा है।

जहां बहोत सारा पानी है नीले रंग का पानी दिख रहा है।

लिखा है सिम्फ़नी हाय वास् एंकर ।

ये एक शॉपिंग मॉल जैसा है शोरूम है मतलब जहां बहोत सारी छोटी छोटी अलमारी के खाने बनाए हुए हैं।

ये एक सामने कुछ रेस्टोरेंट जैसा है छोटा सा--

फ्रिज जैसे लाइट्स जग रही हैं क्रीम रोल जैसे पड़े हैं उसमें और भी खाने का समान है।

फ्रूट शॉप में फ्रूट पड़े हैं ऑरेंज कुछ टोकरियां परी हैं जो की लाल रंग की--